एक सिकंजा है जिसके पास एक लाल रंग का रॉड भी जमीन में गड़ा है हरी घास है नीचे --

इस तस्वीर में एक महिला सफ़ेद कलर की कपडे पहने बच्चो की ओर देख रही है जबकि बच्चे लोहे की टेबल की पीछे की ओर खड़े--

यह तस्वीर कोरबा रेलवे स्टेशन की है जिसमें काले रंग के पील्लरो के सहारे पीले रंग के बोर्ड पर --

यह तस्वीर एक रोड याने रस्ते की है जिसपे मोटर सायकल पे महिला पुरुष जा रहे है महिला के --

पास में एक और मोटर साइकिल का पिछला हिस्सा दिख रहा हैं।

पिले रंग का एक है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है पास में बिजली का एक बहोत बड़ा खम्बा दिख रहा है और ऊपर आसमान में--

जबकि एक वेक्ति नील कलर का हाफ टी शर्ट पहने उन व्यक्तियों की ओर देख रहा है रोड के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी ब्लीडिंग है--

यह मुनि है स्टेज का आधा हिस्सा लाल रंग का बाकि फर्श जैसा दिख रहा है।

स्टेच्यू के गोदी में एक और स्टेच्यू